से आग पकरा रहे हैं।

ये क्रूस है ये ऑटो पर बैठा हुआ है दो ऑटो खड़े है ऑटो के पीछे एक व्यक्ति है।

एक बाज़ार है इसमें मछली है कई सारे बिकते है।

आदमी हाथ बढ़ा रहे हैं मछली उठाने के लिए एक व्यक्ति उँगली दिखा रहे हैं ये मछली ताजे हैं।

जो है स्टूल वो सफ़ेद रंग का कलर किये हुए हे एक लम्बी सी बीज दिख रही है।